अ अगल बगल बहुत सारा पेड़ वगैरा बहुत दिख रहा है हरा हरा।

किराना समान यहां पर सब मिलता है और इसमें रेख भी सामने दिख रहा--

यह एक प्रोग्राम का दृश्य है जो ऊपर मे बहुत सारे लाइट लगे हैं और डी_जे को अच्छे से सेटअप कर लिए हैं और दो चेयर --

पुट्टी में किया हुआ है पूरा बगल में आउ पेंट भी किया हुआ है।

और कोना में आर_ओ भी लगा हुआ है वहां पर।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है जो यहां पर बहुत सारे चेयर दिख रहे हैं और टेबुल में प्लेट है और गुलदस्ता है।

यह एक फंक्शन का दृश्य है जो गेट के सामने बहुत बैलून भी लगा हुआ--

और ऊपर में दो गुलदास्ता का अथि भी रखा हुआ है टांग के और नीचे का कलर ब्लै--